यहाँ पे पेड़ भी है यहाँ पे कुछ लोग खड़े है।

यह इमेज हमें समारोह की नजर आ रही है।

यहाँ पे हुमें झूले भी दिखाई दे रहे है पीछे के साइड हमें लाल कलर का बोर्ड भी नज़र आ रहा है।

यहाँ पे बहुत सारी बसे खड़ी हुई हैं ।

यहाँ पे पीछे की साइड में पेड़ भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोग भी जाते हुए दिखाई दे रहे --

यह इमेज हमे एक मंदिर की नजर आ रही है यहाँ पे पहाड़ का दृश्य है ।

एक यहाँ पे कमरे जैसा बना भी है यहां पे सफ़ेद कलर की स्कूटी भी है ।

यहाँ पे एक बच्चा नीले कलर की फिसल पट्टी पे चढ़ा है और नीचे एक लेडीज खड़ी है।

यहाँ पर हमें दो कैरम भी नजर आ रहे है बहुत सारा हमे खिलौने भी दिखाई दे रहे है।

जिसपे पौधे लगे हुए --

एक तो ये ढेर और ये ढेर है रखे हुए है ।

एल.ई.डी. भी लगी हुई है।

पीछे पेड़ भी है और पीछे की तरफ कुछ बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं ।

यहाँ पर टेबल है कुर्सी है उस पे सफ़ेद कलर के कपड़े डले हुए है ।